मारो है बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से गेट को सजाया गया है।

छोटे स्टेच्यू हैं बड़े स्टेच्यू हैं पीछे जो है--